बहोत सारे मुस्लिम लोग नमाज पढने के लिए आये हुए हैं। यहाँ पे बहोत लोगो की भीड़ लगी हुई है। इस मस्जिद के बाहर में एक --

एक आदमी बैठा हुआ है बैग लेके। यहाँ पे कुछ नाप रहा है। यहाँ पे बगल में बोहोत सारे हरे-भरे --